संतरे रंग का साफा बांध रखा है और घास का रंग हरा है।

कई सारी महिलाएं और पुरुष और बच्चे भी हैं।

इसमें काफी सारी गाड़ियां दिख रही है दो ट्रक दिख रहे हैं एक आदमी दिख रहा है जोकि चल रहा है।

यह एक फूल की दुकान का दृश्य है।